ये विंडो का चित्र है ये बड़ी विंडो है और एक छोटी विंडो है और यहां पे फट्टे भी रखे हुए हैं।

और टिकट लेने के बाद वो अंदर जाएंगे कैंडी बार भी है अंदर।

यह वेट कर रहे हैं कि कब बाइक आएगी कब हम पेट्रोल डालेंगे कब उनसे हम पैसे लेंगे।

यहां पे बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल दिखाई दे रहे हैं और घास दिखाई दे रही है हरि हरि।

चेन्नई होगी बहुत सारी मिट्टी निकाल रखी है गढ़ो में से और ईटे भी पड़ी है।

और यहां पे एक ट्रक भी पार्क हो रखा है पीछे मुझे लाइटें दिखाई दे रही है तीन चार लाइटें है टावर भी दिखाई दे रहा है।

एक होटल का चित्र है होटल बड़ा मस्त वाॅव कितनी मस्त डेकोरेशन है इसकी।

ये एक बेकरी का चित्र है। बहोत अच्छी बेकरी है।

यहां पे पापे रखे हुए हैं बिस्किट रखे हुए है नमकीन रखी हुई है केक रखे हुए।

कमरे का कलर हरा है और इसपे तितलियां भी है कमरे के अंदर एल_सी_डी भी लगी हुई है कमरे के अंदर।

यहां पे बहोत सारे खेत खाली पड़े हैं पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे।